ये किसी आई सडेटक्र का फोटो है जिसका कलर अम्म रेड रेड है और इसका हाथ-हैंडल ब्लैक कलर का है इसके टायर भी ब्लैक कलर के है और टायर भी--

येलो कलर का कुछ रखा हुआ है वो बायस मे टेबल पर बहोत सारे वाइट कलर के कागज रखे हुए।

यहाँ मेकअप शो का फोटो है यहाँ पर आईज मं आईज फेस लिप्स और नेल के सभी सामान रखे हुए--

यह नाई की दुकान का फोटो है जहां पर एक लड़का है एक लड़के की शेविंग कर रहा है और पीछे उसके पीछे बहोत सारे फ्लावर्स रखे हुए --

जो अपने टि_वी के निचे कुछ सामन निकाल रहा है और सेविंग बनारा है उसने सर पे कुछ बान--

इसमें मेडिकल लैबोरेट्री की फोटो दिखाइए दे रहा है मेडिकल के पास में लैबोरेट्री की शॉप है उसके पास में एक शटर लगा हुआ है शटर के सामने स्कूटी रखी हुई है।

स्कूटी के सामने एक पेड़ है पेड़ के पास में बहोत सारी लाइटें लगी हुई--

वो पास में लाला सेनी दवाई है दवाइया खाने की खून टेस्ट की पम्पलेट लगा हुआ है ।

व्हाइट कलर का पर्दे लगा हुआ पर्दे के ऊपर भी व्हाइट कलर के लटकन जैसे लगे और आसपास फ्लावर रखे हुए।

बिच में कुछ पीला पीला कलर दिखाई दे रहा है चोंच भी मिठू की मिठू की चोंच भी काले कलर की है और पीछे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है मिठू के बहार झाली लगी हुई है।

यह किसी सी_बी_सी कॉन्वेंट स्कूल का फोटो है यहाँ पर अ बाहर एक बैनर सी_बी_सी स्कूल का बैनर लगा हुआ है ओ--

ये किसी इवेंट का फोटो है जहां पर एक येलो कलर का पर्दा लगा हुआ है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं व आसपास दो मोर की डिजाइन के--

मिठाइयो की व मंचूरियन वगेरा के फोटो लगे हुए है पास में कुछ लाइट के तार निकल रहे है यहा पर--

यह किसी गाड़ी पार्किंग का फोटो लग रहा है स्टूडियो का यहां डीटा डीटाचलिंग स्टूडियो का फोटो लग रहा है यहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है ब्लैक कलर की गाड़ी।

यह किसी ग्राउंड का फोटो है जहां पर बहोत सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे है।

दिया और ग्रीन कलर है और बाहर के पास में चद्दर का शट चद्दर भी लगा हुआ है और वहां शटर भी गेट भी लगा हुआ है वहां पे भी दो लड़के बैठे हुए हैं।

दुकान के सामने बोहोत सारे बैलून्स रखे हुए है फिरोजी कलर और वाइट कलर के बैलून्स रखे हुए है और वः --

यहां पर मेट भी लगा हुआ है ग्रीन कलर का पर और के सामने बहुत सारे बाइक्स रखी हुई तीन चार बाइक खड़ी हुई है।

उनके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है ब्लैक कलर का और पास में एक व्हाईट कलर की डेस्क रखी हुई है और पीछे भी लकड़ी का--

एक लेडिस और दो आदमी बैठे हुए और एक और वाले सोफे पर दो आदमी और एक लेडिस बैठी हुई लेडिस येलो कलर की साड़ी पहनी हुई है और सा --

पासपोर्ट साइज का कुछ पम्फ्लेट्स वगैरह रखा है पास में कुछ बाइक्स व स्कूटी रखी हुई हैं।

पास में ही एक वाईट कलर रूम बना हुआ है जिसका दरवाजा दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर की लेडिस के पास बहुत सारी दवाईयाँ रखी हुई है और एक लड़का भी किस सवा एक लेडिस को दवाई दे रहा है।

यह किसी होटल का फोटो लग रहा है जहां पर दो तीन टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर एक ग्लास और एक जग रखा हुआ है तीनों ही टेबल के ऊपर--

पास में ही एक शटर के अंदर एक छोटा सा पलंग रखा हुआ है।

के पास में कुछ छोटी दीवाल पे भी बहोत सारे फोटो लगे हुए हैं और पेंटिंग्स से लगी हुई है।

यह रूम का फोटो इस रूम की दीवार ऊपर सफेद कलर की लाइट जल रही है और दीवार पर ग्रीन कलर की पेंटिंग हुई है।

यहां पर बहुत सारे कबाड़ जैसा कुछ रखा हुआ है यहां पे प्लास्टिक के बोरों के अंदर--